व्हाइट कलर का एक बल्ब दिखाई दे रहा है और एक टेबल दिखाई दे रहा है जिस पर बहुत सारे कपड़े रखे हुए है एक और टेबल दिखाई दे रहा है जिस पर--

एक ब्लॅक के कलर बाइक दिखाई दे रही है साथ ही कुछ बड़े-बड़े से हरेभरे पेड़ पौधे भी दिखाई दे रहे है साइड में कुछ पत्थर भी--

चट्टान की उपर एक व्यक्ति बैठा हुआ है और कुछ पेड पौधे भी दिखाई दे रहे है कुछ व्हाइट कलर के घर भी दिखाई दे रहे है और बडा सा आकाश भी दिखाई दे रहा है।

दो व्यक्ति दिखाई दे रहे है कुछ खंबे भी दिखाई दे रहे है कुछ लाइटस के तार भी दिखाई दे रहे है।

गार्डन दिखाई दे रहा है कुछ गमले भी दिखाई दे रहे है जिसमे कुछ पेड़ पौधे लगे हुए है गमले मे पीले कलर के पे फुल खिल रहे है।

कुछ व्हाइट कलर के पत्थर भी दिखाई दे रहे हैऔर कुछ खिड्किया भी दिखाई दे रही है आकाश भी दिखाई दे रहा है जिसका कलर नीला है।

बड़ा सा डैम दिखाई दे रहा है डैम के बिच मे से पानी निकल रहा है पानी का कलर हलका पालि है।